सामूहिक प्रार्थना के लिए एकत्र हुए हैं और वे सब बैठकर शांति से प्रार्थना कर रहें हैं।

तस्वीर किसी मंदिर के भीतर ली गई है।

और लोगो के बैठन का भी इंतेज़ाम अच्छी तरीके से किया गया है।

जहाँ अगल-बगल में मकान हरे भरे वृक्ष और कुछ झाड़ियाँ भी मौजूद नजर आ रही है। यह तस्वीर बहोत ही खूबसूरत है।